सामने कुछ डिब्बे रखे हुए हैं जो कि रैक में जमे हुए हैं।

इस फोटो में सामने एक शॉप दिखाई दे रही है जिस पर अलग अलग तरीके के सामान रखे हुए हैं।

इस फोटो में सामने एक बड़ा सा कपड़ों का शोरूम दिखाया गया है जिसमें बहोत सारे कपड़ों के बंडल रखे हुए हैं।

और सामने टेबल पर रखे हुए कुछ नमकीन बिस्कुट के पैकेट दिखाई दे रहे हैं और एक क्यू_आर स्कैनर रखा हुआ है।

इस फोटो में सामने कुछ पन्नियों के गड्ढे रखे हुए हैं।

इस पर कुछ बोतलें रखी हुई है और कुछ सामान रखा गया है जिसमें टिशु स्टैंड भी रखा हुआ है।

कुछ छोटे से घर भी दिख रहे हैं नीचे कुछ पानी दिख रहा है जो की पीले रंग का दिखाई दे रहा है।

ये मुंह ब्लर किए गए हैं और कुछ के मुंह नहीं हो रहे हैं।

और ऊपर एक कुछ हैंड वाली अटैची रखी हुई हैं सामने दो आदमी दिख रहे हैं।

और दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है सामने कुछ ब्लैक कलर के दरवाजे दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में सामने लुमिनस का एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ दिख रहा है उसके नीचे एक बोर्ड और लगा हुआ है और एक एमरोंन का बोर्ड लगा हुआ है।

हमें कुछ आदमी दिखाई दे रहे हैं और एक आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ है जिसके पास में एक बोतल रखी हुई है।

एक बड़ा सा मेज पड़ा हुआ है आगे की तरफ और एक बड़ा सा मेज पड़ा हुआ है पीछे की तरफ।

ऊपर कुछ डिब्बे रखे हुए हैं नीचे की तरफ कुछ जींस है दिख रही हैं।

एक सामने एक बड़ा सा पाइप दिखाई दे रहा है जो की प्लास्टिक का है जिस पर कुछ क्लिप लगी हुई है नीचे की तरफ दो सिकचे से दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में एक कमरा दिखाया गया है जिसमें कुछ बेंच पड़ी हुई हैं और सामने एक मेज पड़ी हुई है जिसके ऊपर एक बॉटल रखी हुई है।

सामने एक फ्रिज दिख रहा है जिसमें कुछ सामान लगा हुआ है।

झील बहुत दूर तक फैली हुई है सामने एक सड़क जारी है जोकि मिट्टी की है।

इस फोटो में सामने एक हरे रंग का ग्राउंड दिखाई दे रहा है जिसमें छोटी छोटी घास उगी हुई है।

नीचे की तरफ कुछ कागज के टुकड़े बिखरे हुए हैं ऊपर एक टीन दिख रही है सामने नीले कलर की और सफेद रंग की सामने कुछ सेब रखे हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ अनार रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में सामने एक साइकिल की दुकान दिखाई गई है साइकिल की दुकान में बहुत सारी साइकिल दिख रही है।

और बीच में रखी हुई एक कुर्सी दिख रही है ऊपर की तरफ कुछ लाइटें जल रही हैं।

नीचे कुछ पेन के पैकेट रखे हुए दिखाए गए हैं और कुछ डिब्बे दिखाए गए हैं।

सामने फेविकोल रखे हुए भी दिखाई दे रहे हैं और एक कुर्सी पर एक कपड़ा रखा हुआ है।

साइड में कुछ बड़े बड़े पॉट्स भी रखे हुए हैं जिनके साइड में एक स्टील का पॉट रखा हुआ है।